है टेम्पू लगा हुआ है उसमें टमाटर लगा रखा हुआ है।

अगल-बगल में बहुत सारा घास सब है पड़े-पौधा सब भी है।

एक होटल है वहाँ पे डांस क्लास चल रहा है।

पंद्रह-सोलह बच्चे सब डांस कर रहे हैं।

और वहाँ पे पाइप सब भी है और पीला कलर का टावर कहीं हैं।